उसीके सा सामने कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं जोकि--

उसकी तरफ देख रहे हैं कुछ लोग यहां पर है।

जो कि बहुत अच्छी लग रही है पार्क के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है जिसमें कि पीले रंग कलर की पत्तियां लगी हुई हैं बहुत ही अच्छा यह बहुत ही बड़ा--

ये एक नदी का व्यू है जो की बहोत ही--

रेड पौधे भी लगे हुए हैं नदी के आस पास जंगल है।

बहोत सारी यहां पर कॉलेज की बसे खड़ी हैं।

और कुछ लोग अंदर की तरफ यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बहुत ही अच्छा एक टेबल दिखाई दे रहा है जोकि बहोत ही--

ये एक ग्राउंड की तस्वीर है ग्राउंड में लाल कलर की टाइलें लगाई गई हैं।

ये एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ

साथ में ये एक बस स्टैंड बना हुआ है।

पार्क के आस पास गोल राउंड में कुछ कमरे भी बने हुए हैं।

औरतें कुंभ के बीच खड़ी हैं और उसकी के पीछे-पीछे लोग भी खड़े हैं।

एक टेबल और दो कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं।

यह एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कि तीन मिरर लगे हुए हैं।

उसी के साथ बाहर यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक पेट्रोल पंप का बोर्ड भी--

हाथ में ही कुछ गाने भी पड़े हैं।